पेंसिल रखे हुए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ हैं जो यहाँ प पर पर्पल कलर का शर्ट पहना हुआ हैं।

कई व्यक्ति प्राथनाए कर रहे है एक व्यक्ति जो पिंक कलर का शर्ट पहना है एक लाइनिंग कलर की शर्ट --

यहाँ पे अलग अलग क्लासेस की बुको को रखा गया है यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है।